सामने एक बैक है जो नीले रंग की पोस्टर लगी हुई है दो गेट लगी हुई है सफेद रंग की बाहार में एक का पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग के पत्ते बगल में एक --

खंबे गड्ढे हुए जिस पर ताला की हुए ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो संथ रंग सफेद और नीले रंग की आसमान है पड़े में एक पेड़ जॉइनिंग की पट्टी है।

एक लकड़ी के पुल बनाए गए हैं जो और नीचे के साइड पर काफी चौड़ा नदी है अगल बगल पेड़ पौधे जो हरी भरी पत्तिया है |

हॉटस्टार लगाई गई है जो नीले रंग के स्वेटर है कांच लगा हुआ है।